यो एक शर्ट का शोरूम है।

इसमें वो हमें सूरज दिखाई दे रहा है। वो धता हुआ थोड़ा पहाड़ जैसा भी लग रहा है और घास फूँस दिखाई दे रही है। आदमी खड़ा हुआ है। रहे हैं।

एक खिड़की पांच खिड़की दिखाई दे रही है यहाँ पर गेट है इसके अ अंदर बिछा हुआ दिखाई दे रहा है वही गेट है।